होटल खाने का बहोत अच्छी तरह से बने हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर डिजाइन भी बने हुए दिखाई दे रहे है।